नीचे इसमें जमीन से लग कर कुछ लोहे की जाली लगी गयी हैलगाई गयी है रेलिंग जैसी।

ब्लैक कलर की चट्टाने है और साफ आसमान दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर से तार दिख रहे हैं।

यहाँ पर हमको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है| इस बिल्डिंग के अंदर एक बैंक ओफन है जिसमें बिहार ग्रामीण बैंक लिखा हुआ है साइड शे इसमें सीढ़ियाँ गई हुई हैं।

और बीच में एक मशीन है जो हल्की ब्लू कलर की है और इसके पीछे साइड में बहोत बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यह मस्जिद है और उसके सामने देखेंगे तो पेड़ हरे-भरे दिखाई दे रहे हैं और इस मस्जिद के नीले पट्टे से इसकी डिजाइनिंग की गई है।